यह एक पुराने मंदिर की फोटो है जो लाल रंग का है और इसके ऊपर काले रंग की काई जम गई है।

यहां पर दीवाल पर किसी व्यक्ति के ढेर सारे पुरस्कार लगे हुए हैं।

सामने की तरफ ढेर सारे वहन रखे हुए हैं जिनमें स्कूटी है।

यह एक मार्शल आर्ट का अरीना है डोजो है जिसमें कुछ लोग मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं।